यह तस्वीर मे मुझे एक शादी का एंट्रेन गेट नजर आ रहा है जिसमे मुझे कुछ मेट बिछी हुई नजर आ रही है ओर ये मेट का कलर मुझे ग्रीन नजर आ रहा है।

बाहर की ओर मुझे कुछ बोर्ड लगे हुए दिखाई दे रहे है जिनके ऊपर लिखा हुआ है फ्री होम डिलीवरी मतलब यह पर एक डिलीवरी की जाती होगी फ्री मे।

पर मुझे अलग अलग तरीके की लाइट जलते हुए दिखाई दे रही है जेसे की ग्रीन ऑरेंग ब्लू दिखाई दे रही है ओर यह पर त रात का समय हो रहा है यह देखने पर--